कॉलनी का गेट दिखाई दे रहा है इसके बहार इसका बोर्ड भी लगा हुआ है जिसमे की --

यहाँ पर काफी सारी अलग-अलग बड़ी-बड़ी मशीने लगीं हुई है।

यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये एक हेल्थ सेन्टर है जिसका कि काफी बड़ा बोर्ड लगा हुआ है।

वजन घटायें या बढ़ाएं। अच्छी सेहत पायें। पूछिए कैसे ?

डी.एम्. बगले के पीछे इशारा पब्लिक स्कूल के पास लिखा हुआ है।

एक बहोत बड़े मल्टीप्लेक्स में शटर में बना हुआ है। इसके बाजू में दो और शटर बनी हुईं है जोकि अभी बंद है।